झिल्ली में रखी हैं। चप्पल-जूते भी रखे हैं। बैग हैं। बोहोत बड़ी सी रैक बनी हुई है पीले कलर की।

सामने एक कपड़ो की दुकान है बहोत सारे कपड़े है एक आदमी एक औरत भी बैठी हुई है जीन्स वगैरा बहोत सारी रखी है जूते रखे है शर्ट --

सामने एक दुकान है एक चेयर दिख रखी है कूलर रखा है गत्ता भी रखा है एक नीचे टेबल भी है उसमे काला कपड़ा बिछा हुआ है बहोत सारी समान है।

और सब बहोत सारे बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं और मास्क लगाए हैं।

सामने एक मिक्की माउस है उसमे बहोत सारे गुब्बारे लगे है।

सामने एक बाउंड्री है बीच में एक गेट लगा हुआ है बहोत सारी गाड़िया हैंड पाइप लगा हुआ है।

सामने एक लोग मछली बेच रहे है बोरी में बहोत सारी मछली रखी है तराजू में रखी है एक थर्माकॉल के --